सामने एक गेम का मैदान है।

इन गेंदो के फूल में एक रेड कलर का फूल नजर आ रहा है।

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान में बच्चों के स्कूल बैग रखे हुए हैं।

हॉल में येलो कलर की शर्ट रखी हुई है।

इसमें कांच के द गेट लगे हुए हैं।

उस मशीन पर पीला कलर किया हुआ है।

मशीन के ऊपर रेड कलर का डब्बा बना हुआ है।

सामने एक बड़ी सी सड़क दिखाई दे रही है।

उसमें से एक आदमी चाय पी रहा है।

गेट में एक महिला फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रही है।

उसके ऊपर एक रेड कलर की लाइट जल रही है।

पेट्रोल पंप पर बहुत सारी लाइट लगी हुई हैं।

सामने एक लोडिंग रिक्शा दिखाई दे रहा है।

सामने एक हॉस्पिटल का केबिन दिखाई दे रहा है।

ब्लैक कलर की कढ़ाई में के ऊपर ट्रे रखी हुई है।

सामने कुछ मिस्त्री काम कर रहे है।

यहां पर कि बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं।

उसके उप वहीं पर एक वाइट कलर का एरोप्लेन खड़ा हुआ है।

यहां पर लेडीसे और जेंट्स दोनों बैठे हुए हैं।

पेट्रोल पंप की मशीन दिखाई दे रही है।

मशीन के दोनों साइड ऑरेंज कलर के खंभे हैं।

कैफे पर नीचे हरी घास वाला कार्पेट लगा हुआ है।